ट्रक का कलर ब्लू है और ऊपर सिल्वर कलर का है।

फोटो में तीन बेसिंग है।

श्रृंगार स्टोर के ऊपर पोस्टर में लिखा गया है कोमल श्रृंगार एवं गिफ्ट पैलेस --

आगे खेलने के लिए बहुत सारे चीज है और छोटा छोटा घर भी है।

फोटो में दिख रहा है कि एक हरे कलर का घर है।

उसके घर के साइड में टेंट लगाए गए हैं।

गुफा के अंदर लाइट आ रही है।

जैसे कि गुलाब का फूल रखा गया है गेंदे का फूल रखा गया है लिली का फूल है।

एक इंसान है जो कि फोटो खींचा रहा है।

अंदर बहोत सारे जनरल का दुकान का सामान है।

उसके साइड में पेड़ पौधे हैं।

फोटो में दिख रहा है कि यहां पे कुछ लोग प्रोग्राम कर रहे हैं।

यहां पे हरमुनियम भी रखा गया है।

फोटो में दिख रहा है कि यहां पे एक बड़ा सा घर है।

फोटो में दिख रहा है कि एक मछुआरा है जोकि मछली काट रहा है।

पीछे बहुत सारे सामान रखे गए है।

जिसके अंदर बहुत सारे रॉयल एनफील्ड के बाइक लगाए गए हैं।

इसके अंदर बहुत सारे लंबे लंबे वायर हैं और लोहे का बहुत बड़ा बड़ा टॉवर है।

ब्लू और वाइट कलर का एक घर है।

और साइड में एक ट्रैक्टर भी लगा हुआ है।

फोटो में दिख रहा है कि एक बडा सा ट्रक है।

के अंदर एक नदी जैसा कुछ निकल रहा है चट्टानों में से पानी निकल रहा है।

फोटो में दिख रहा है कि यहां पे बहोत सारे सामान रखे गए हैं।

बहोत सारे ट्रॉफी रखे गए हैं और दोनों साइड भी रखे गए हैं।

जिसके अंदर बहोत सारे बुक रखे गए हैं ड्रावर में।

दो पंखे लगाए गए हैं।

रोड के कोने में एक कैमरा भी है।

यहां पे दिख रहा है कि एक सैलून है।

जिस सैलून का नया नया ओपनिंग हुआ है।